आप देख सकते है यह चर्च है।

आप देख सकते हैं यह बहुत बड़ा मैदान है पानी नजर आ रहें हैं बहुत सारे छोटे-बड़े --